इसको भी पेड़ ने ढक लिया हैं इसके अंदर के तीन गेट टनल जैसे।

छोटी-छोटी मूर्तियां रखी है इन लोगों की वहाँ आ पास में उनके साथ वाले बैठे हैं कुछ खड़े हैं कुछ मूर्तियां ये इनकी पूजा की जाती है जैन समाज में।

झूले है बच्चे खेल रहे है यहाँ पर स्विमिंग पूल है ये खेलने के लिए गार्डन है।